एक आदमी है और एक औरत है। आदमी औरत के हाथ में ई रिक्शा का चाबी देते हुए खरे है।

कुछ मोटर साइकिल दिखाई दे रहे सामने दो तीन मोटर साइकिल दिखाई दे रहे हैं और एक उजले कलर का बड़ा सा गाड़ी भी दिखाई दे रहा। सरक के ऊपर एक पुल भी बना हुआ है।

हाथी के सामने एक आदमी बैठा हुआ है जिसने उजला कलर का कपड़ा पेहना --

सामने एक नदी भी दिखाई दे रहा है। नदी के किनारे एक छोटा सा पुल बना हुआ है।

यहाँ सामने दो मूर्ति रखे हुए हैं मूर्ति बहुत बड़े साइज का है जिसे बहुत सुंदर तरीके से फूलो से सजाया गया हैं।

यहाँ महिला पुरुष बच्चे सभी ढोल बजा रहे हैं। बहत सारी भीर लगी हुई हैं।

यह एक मंच का दृश्य है मंच के ऊपर बहुत सारी बालिकाएं अपने नृत्य को प्रस्तुत कर रही हैं।

मंच पे जितने भी लोग खड़े हैं सबने उजले कलर का कपड़ा पहना है।